उसके नीचे जो नीचे एक शोरूम सा चित्र दिखाई दे रहा दिखाई दे रहा है सीढ़ियां लगी हुई दिखाई दे रही हैं नीचे कुछ दुकान सा दिखाई दे रहा है।

यह बहोत ही अच्छा डेकोरेशन किया गया है ये कुछ स्टेज स्टेज है स्टेज के ऊपर कुछ आदमी बैठे है कुछ गाना बजाना कर रहे है।

इसके पंख है लंबे लंबे से पंजे कुछ दिखाई दे रहे उधर भी बच्चे ने कुछ मुर्गियां मुर्गे सब दिखाई दे रहे उधर पेड़ सा कुछ --

दोनों साइड पेड़ भी है गेट के ऊपर पेड़ दिखाई दे रहा है गेट बंद दिखाई दे रहा है गेट के अंदर में सारी कुछ स्कूटी कुछ एक आदमी साइकिल पर साइकिल खड़ा दिखाई दे रहा है।

यह कुछ सजावट की गई है डेकोरेशन से ऐसे कुछ भीं दिखाई दे रहा हैं ऊपर ऐसे बिल्डिंग ऐसे कुछ लगाके डेकोरेशन सजाया गया हैं।

ये सामने बोर्ड लगा हुआ दुकान पे मीटर लगा दिखाई दे रहा है और मुझे कुछ बालकनी से इसपे दिखाई दे रहा है दोस--

यहीं कुछ घास भी दिखाया गया है अलग अलग प्रकार से ऐसी पता नहीं कौन सी घास जानवर पता न कौन सा जानवर है इसका कलर दिखाया गया है।

पैर में उसने शूज़ पहन रखा है उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा है उसने जैकेट पहन रखा है थोड़ा बुर्जुग सा शायद भी लग रहा है ज्यादा बुजुर्ग भी नी लग रहा है।

एंट्री साइड से कुछ सामान सा रखा गया है दो मग बीकानेर ऐसे कुछ कार्टून के ऊपर लिखा हुआ है कार्टून भी रखा गया --